और ये फूल पहले पाए जाते थे लेकिन अब कुछ दिन से देखने को नहीं मिल रहा हैं। आप बात सकते हैं कि ये फूल कहा मिलता हैं अगर बात सकते हैं तो कमेन्ट जरूर करिएगा।

यह एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे अ पहाड़-सा दिख रहा है घर छोटे-छोटे दिख रहे हैं बहुत अच्छे लगते हैं।

इसके माँ के साथ आया होगा। बहुत ही अच्छा दृश्य है देखने में बहुत सुंदर लगता है धन्यवाद।

यहाँ पे हर एक चीज़ वो उपलब्ध है जो होना चाहिए। बहुत ही मस्त पे --

यहाँ एक बहुत ही अच्छा घर बना हुआ गेट है पोपुलर हार्डवेयर लिखा हुआ है। डाक्टर एम_आर_एस साइड में दुकान है गेट है।

यह एक म्यूजियम है। कुछ आदमी म्युजियम सिख रहे हैं और कुछ सीखा भी रहे हैं।

यहाँ एक बहुत सुंदर होटल है। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है गार्डन है ब्लैक - ब्लैक कलर के लवर भी हैं। बहुत अच्छे लगते हैं देखने में काफी आकर्षक है।